इस फोटो में एक बस अड्डे का चित्र दिखाया गया है।

भैंसों के पीछे एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है।

इस फोटो में एक लाइब्रेरी का दृश्य दिखाया गया है।

इस फोटो में एक कैफ़े दिखाया गया है।

सामने की तरफ कुछ कस्टमर भी बैठे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सब्जियों की एक दुकान दिखाई गई है।

सब्जियों की दुकान में कुछ सब्जियां टोकरी में रखी हैं।

खंभे के ऊपर एक बैनर भी लगा हुआ है।

काउंटर पर घूमने वाला शोकेस रखा हुआ है।

इस फोटो में फूलों की दुकान दिखाई गई है।

बैनर पर शिव कुंज मल्टी कार वर्कशॉप लिखा हुआ है।

फूलों से बहुत सारी माला बनी हुई दिख रही हैं।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

महिला के बगल में एक बोतल भी रखी है।

इस फोटो में एक मेट्रो स्टेशन दिखाया गया है।

इस फोटो में किसी नदी का दृश्य दिखाया गया है।

नदी के दूसरे छोर पर एक पुल भी दिखाई दे रहा है।

सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्राली चल रहा है।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट दिखाया गया है।

घास के आस पास गमलों में पौधे भी रखे हुए हैं।

के अंदर एक व्यक्त की प्रतिमा रखी दिख रही है।

बिल्डिंग के सामने हरे रंग की मैट बिछी हुई है।

एक बच्चा टॉय कार से खेल रहा है।

इस फोटो में एक इमारत दिखाई गई है।